और येलो कलर के बॉक्सेस भी दिख रे हैं यहां पे सुंदर सुंदर लाइट से पूरा हॉल चमक रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक टेंपल दिखाई दे रहा है जिसके गुंबद लगे हुए है।

इस तस्वीर में मुझे एक लड़का खड़ा हुवा दिखाई दे रहा हैं।

बस नजर आ रही है जो ब्लैक कलर और पिंक कलर की हैं।

और बहुत सारे रंग बिरंगे बैग भी दिख रहे हैं यहां पे बहुत सारे समानों को शीशे के शोकेस में रखा गया है।